मेरे को यह एक घर दिखाई दे रहा है घर के दीवार में फुग्गे लगे दिखाई दे रहा है मेरे को--

बस दिखाई दे रहा है बस के बाद में पुलिस वाला दिखाई दे रहा है और सामने कार दिखाई दे रहा है।

बाजार में मेरे को एक दुकान दिखाई दे रही है वहां चद्दर वद्दर--

वहां मेरे को दिखाई दे रहा है मेरे को आजु बाजु खुब सारे पेड़ लगे है।

वहां मेरेको दो तीन ठो दुकान दिखाई दे रही है मेरे को--

वहां मेरे को एक हर प्रकार की अठारह प्रकार की दिखाई दे रहा है।

करके दिखाई दे रहा है मेरे को वहां नाइटी दिखाई दे रही मेरे को।

ये मेरिकल दिखाई दे रही है मेरिकल के अंदर एक कुर्सी दिखाई दे रही है एक मेरिकल मेरे को एक कोल्टन दिखाई दे रहा उस में मेथा दिखाई दे रहा है ऊपर--

दे रहा है मेरे को।

वहां लोग खडे दिखाई दे रहे बैठे दिखाई दे रहे और बहोत जन बनी दिखाई दे रहे है।

नीचे मेरे को व्हाइट कलर का अह नीचे बोरा दिखाई दे रहा है दो--

दिखाई दे रहा है मेरे को दुकान में समान रखा दिखाई दे रहा है अ--

ऊपर दीवाल व्हाइट कलर का पुता दिखाई दे रहा है ऊपर--

हे दुकान दिखाई दे रही है एक ये कोट टंगे दिखाई दे रहा है पंखे लगे ए वन मेरे को सामान रखा दिखाई दे रहा है।

यहां मेरे को फोन की दुकान सब कुछ दिखाई दे रही है।